और यहाँ छोटी सी एक समुंद्र दिखाई दे रही है जो इसमें पानी पानी का कलर --

यहाँ हमें कुछ घरें दिखाई दे रही हैं कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं जो वाइट कलर का है क्रीम कलर का है और मैरून कलर का है और इसके ज़मीन का कलर मी --

साइकिल दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है उसमें वाइट कलर का एक झोला टंगा हुआ है।

और दो डब्बा दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है ब्लैक कलर का है और वाइट --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

और इ और इस ऐना के साइड साइड में कलर नीला कलर का है और कुछ लोग दिखाई दे रहे --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

और इसके दरवाजे का कलर ब्लैक है और यहाँ ढेर सारी कुर्सी दिखाई दे रही है रेड कलर की इसके जमीन का कलर ग्रे है और ब्लैक कलर का है --

और एक आदमी दिखाई दे रहा है ग्रीन और ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

यहाँ हमें एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है ग्रे कलर के है और इसमें एलवेस्टर का एल्वेस्टर का कलर ब्लैक है और मिट्टी कलर है और ग्रीन है --

और यहाँ ढेर सारी फूल लगे हुए हैं फूल के माला लगे हुए हैं ग्रीन कलर के हैं और ऑरेंज कलर के हैं।

और इसके दुकान का कलर वाइट है इसके जमीन का कलर रेड है और यहाँ ढेर सारे कुछ डब्बे दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक और वाइट कलर के हैं।

कलर की है और पिंक कलर की है और इसके अंदर का कलर ब्लैक है।

यहाँ हमें एक चर्च दिखाई दे रहा है वाइट कलर का है और यहाँ कुछ लोग है जो वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

कलर का और यहाँ कुछ लाइटें लगी हुई है वाइट कलर की कुछ कुर्सियाँ और टेबल दिखाई दे रही है जो मिट्टी कलर के हैं इसके जमीन का कलर ग्रे है --

यहाँ हमें एक घड़ी की बड़ी सी दुकान दिखाई दे रही है इस वाइट कलर की है और इसमें ढेर सारी घड़ी रखी हुई है रंग-बिरंगी --

और उसके कुछ नाम लिखी हुई है और एक और एक कुर्सी दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का --

यहाँ हमें घर दिखाई दे रहा है येलो और ग्रे कलर का है और इसमें सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है रेड और --